लोहे का गेट भी लगा है।

बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं जमीन पर घास लगी हुई है।

पुल पर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

कुछ लोग बाइक से है और कारें भी दिख रही है।

इस फोटो में सामने एक मूर्ति दिख रही है।

मूर्ति पर माला डला हुआ है।

और एक दिवाल भी बनी हुई हैं।

इस फोटो में सामने एक बिल्डिंग दिख रही है।

बहुत सारी दुकानें लगी हुई है।

पीछे एक लाइट लगी हुई है।

इस फोटो में सामने एक कैफ़े दिख रहा है।

इस फोटो में बहुत सारे सामने गमले रखे हुए है।

पीछे एक ग्राउंड दिख रहा है।

सामने एक स्टेज बना हुआ है।

दो बड़े बड़े कटोरे रखे हुए हैं।

एक सफेद कलर की कार भी खड़ी हुई है।

शीशे का एंट्री गेट भी लगा है।

जिसके अंदर एक काउंटर बना हुआ है।

इस फोटो में सामने बहोत सारी लड़कियां दिख रही हैं।

और बहोत बहोत सारी कुर्सियां रखी हैं और टेबलें भी रखी हुई हैं।

और पेड़ भी लगे हुए हैं।

पूल के किनारे एक आदमी साइकल पे खड़ा हुआ है।